यह एक चित्र है बहोत ही सुन्दर चित्र है। यहाँ पर लोग पढ़ते है। यहाँ पर --

सेव संतरा काफी फल कलिंदा आम बोहुत से फल मिलते हैं यहाँ पर बोहुत ही अच्छे फल हैं बोहुत ही अच्छे हैं।